इस झरने में ऊपर का पानी सफेद एवं नीचे आते हुए पानी हरे कलर के दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने बहुत से हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में सामने कोई ऑफिस है यहां पे एक महिला खड़ी हैं जिन्होंने हरे कलर का सूट पहना है।

ग्राउंड में खंभा भी लगा है।

इस फोटो में सामने एक ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसमें सामने व्हाइट कलर से लिखा है ब्लशिंग टॉन ।

इस फोटो में सामने बहुत से टेबल कुर्सियां चेयर रखी हुई हैं।

सामने दो बॉक्स दिख रहे हैं जिसमें बहुत जंग लग चुका है।

इस फोटो में सामने एक सफेद कलर के बहुत बड़े बोर्ड में फ्रोजन कोन आइसक्रीम्स कैफे लिखा हुआ है।